चटाइयों की जा ना माज बिछी दिखाई दे रही है।

नोटिस बोर्ड नीले कलर का लगा हुआ है।

साइड की दीवारो पर पेड़ उगे दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पर भी बहुत सारी घास पड़ी है।

सामने एक बहोत बड़ी सी इमारत है जिसका नाम भूलभुलैया है।

इसमें सामने स्लाइडर लगा दिखाई दे रहा है।

काउंटर रखा है उस पे पेपर्स पेन रखा है।

खंभे लाइटें भी लगी हुई हैं।

बीच में किताबें रखने वाला हैंगर भी लगा है।

बाहर रेली है साइड में एक खंभा है।

इसमें लाइन से बहुत सारी बेंच लगी हैं।

अलमारी भी बनी है किताबें रखने वाली।

नीचे नदी बनी है जिसमें बहोत सारे लोग स्नान करते दिख रहे हैं।

आस पास बोहोत सारे खंभे लगे हैं।

जमीन पर कचरा भी पड़ा दिख रहा है।

कुछ पुतले खड़े हैं जिन्होंने फ्रॉक पहनी है।

रोड पर कुछ बाइके जाती दिखा दे रही हैं।

साइड में एक कुर्सी टेबल रखा है।

सामने एक सफेद कलर की बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

जिसने लाल कलर का लहंगा काला टॉप पहना हुआ है।

सामने एक आदमी बड़ी सी सीढ़ी लिए खड़ा है।

जमीन में हरी सूखी घासें भी बहुत सारी उगी दिखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ से लाइटें कीरकरी गिरती दिखाई दे रही हैं।

सामने एक डी_जे भी रखा दिखाई दे रहा है।

आसपास बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।